और कंपूटर है टी.वी. है टेलीफोन है कुछ बुक पड़े हैं कुछ पेन पड़े हैं कुछ डिब्बे हैं।

कुछ व्यक्ति देख रहे हैं कुछ खड़े हुए हैं। आसपास ग्राउंड है बड़ा। लोहे पड़ा है।

जगह-जगह कुर्सी लगी हुई हैं । रंग बिरंगा टेंट लगा है। अच्छी डिज़ाइने बनी हुई हैं। कुर्सी लगी है टेबल ल --

कुछ जेन्ट्स बैठे है कुछ लेडीज बैठी हुई है। कुछ अच्छी अच्छी लाइटें लगी है। गेट लगे हुए हैं।

उसके सामने बहोत बड़ा रास्ता हैगा । उसके सामने एक ग्राउंड पड़ा है बहोत बड़ा सा --

अच्छे अच्छे डिजाइनें बने हुए हैं। पुतले बने हुए हैं। खंभे है। चदर से --

हवाई अड्डा हैगा सामने बहुत बड़ा सा।